--सामने लोहे की टेबल दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर फैविकोल कागज सीटे दिखाई दे रही है यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे है यहाँ मैडम खड़ी हुई है।

यहाँ सामने नदी दिखाई दे रही है स्कूटी दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पर सामने नदी- इ पर एक पुल जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये आदमी है जो खड़ा हुआ है जो एल_ई_डी पर लगी हुई स्क्रीन पर कोई सा प्रोजेक्ट समझा रहा है और उसके यहाँ कंप्यूटर रखा है।